पानी फेंकने वाले के चारों तरफ एक गोल घेरा है जिसका रंग आसमानी--

होटल में एक बाइक खड़ी है जो की ब्लैक कलर की है।

होटल के सीढ़ी पे कुछ लोग बाहर आ रहा है।

इस मकान से देखने के बाद काफी अच्छा महशूस हो रहा है इस मकान के सामने एक गार्डन लगा हुआ है गार्डन में अनेक प्रकार के पौधे अनेक प्रकार के फूल हैं।

यह एक पूजा करने वाला पूजा स्थल है यहां का दीवार सफेद रंग का है।

समाने एक टोटो जा रहा है और एक कार भी जा रहा है कार का रंग व्हाइट है।

पीछे में एक पेड़ है खेत में एक गन्ना का भी पेड़ लगा है गन्ना का रंग हरा है।

सामने में एक टेबल लगा है टेबल पर पानी का बोतल है और एक लैपटॉप भी है और एक छोटा सा पेड़ भी है।

यह एक होटल है होटल के अंदर में पंख लगा है पंखा का कलर ब्लैक है पंखा के ऊपर लाइट जल रहा है।

होटल में सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हैं कैमरे का रंग व्हाइट है।

सामने दो गाड़ी खड़ी है एक गाड़ी रेड कलर की है और दूसरी गाड़ी ब्लैक कलर की है।

गेट के सामने चार आदमी खड़े हैं और कुछ औरत भी खड़ी है सामने में सी सीढ़ी भी है।

पीछे में प्लास्टिक में कुछ रखा गया है।

यहां पर हॉस्पिटल का बैनर है।

यह एक दुकान है दुकान के सामने में प्लास्टिक का डब्बा रखा है ।